यहां पर मुझे एक बोहोत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है।

अपने आप जनने वाली सीढ़ियां लगाई हुई नजर आ रही है।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ी होटल रिसेप्शन दिखाई दे रही है।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

यह मुझे जिम हॉल लग रहा है।

बाइक्स के कलर ब्लैक नजर आ रहे हैं।

साइड में एक डस्टबिन है।

ए-टी-एम के पीछे की दीवारों का कलर भी।

पेड़ों के बीच में भी बहुत सारी बर्फ दिखाई दे रही है।

पीछे आसमान भी नजर आ रहा--

यहां टनल से आती हुई नजर आ रही है।

इसके चारों तरफ बोहोत सी झाड़ियां है।

वेल्डिंग केक का कलर येलो दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे जिम हॉल दिखाई दे रहा है।

वह बिल्डिंगे मुझे पुराने जमाने की लग रही है।

और पीछे नीला आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक ब्राउन कलर की है और एक वाइट कलर की है।

यहां पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग की।

जिसका कलर रेड दिखाई दे रहा है।

इस हॉल के बाहर क्रॉस का निशान लगा हुआ है।

दिवारों का कलर ऑरेंज आ रहा है।

और एक ब्लैक कलर का फैन लगा हुआ है।

और उसमें कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है।

विल्डिंग के पीछे से नीला आसमान भी नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे एक मंदिर नजर आ रहा है।

इसमें से बहोत सी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

शोरूम के अंदर से बहुत सी लाइट्स लगी हुई है।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

इसके आगे एक सड़क नजर आ रही है।

साथ में दो व्यक्ति बैठे हैं।

यहां पर मुझे एक शॉप नजर आ रही है।

इसके बाहर लिखा है क्रॉस बाइक्स --

इसके अंदर बहुत सी छोटी-छोटी गाड़ियां --

और हर एक चीज अवेलेबल्स है।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

यहाँ पर मुझे घना जंगल दिखाई दे रहा है।

पानी बहोत तेज बहता हुआ नजर आ रहा है।

साथ में ही पीछे आसमान नजर आ रहा है।

यहाँ पर बहुत अच्छा सिंक और नीचे से अलमारी बनाई हुई है।

और पीछे से बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें वर्कर काम कर रहे होंगे।

यहां पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

बड़े-बड़े कप्स रखे हुए हैं।

द ग्रीन वेलकम लिखा हुआ है।